बिल्डिंग है बिल्डिंग बन रही है अभी और इस पर ग्रीन कलर के कपड़े लगे हुए हैं और यहाँ पर काफी अच्छा बोर्ड लगा हुआ है| और यहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं| ऊपर यहाँ पिलर दिख रहे हैं उसके पीछे तार हैं तार के आगे काफी बडा ग्राउन्ड हैं और यहाँ पे मिट्टी सुख रही हैं।

अगल-बगल में काफी अच्छा प्लेस और पेड़ भी सूख रहे हैं और दिखने में काफी मस्त जगह हैं अच्छी प्लेस हैं।

वो आराम से घूम रही है एंजेल के साथ और यहाँ पर काफी पानी है| पानी का कलर कुछ ब्लैक - ब्लैक है और काफी अच्छा देखने में लग रहा है| और बैकेंड से काफी आलीशान जगह है| यहाँ बच्चे नहाने आते हैं और भैंसे नहाने आरी है| सुबह-शाम नहाती है बोहोत एनजोये करते हैं।

इस सिस्टम में काफी अच्छा नजारा है| हिरन दिख रही है हिरन खेत में खड़ी हुई है| काफी अच्छा लग रहा है| देखने में एक बाउंड्री है बाउंड्री के पीछे कुछ पेड़-पौधे और घास बिछी हुई है| काफी अच्छा लग रहा है देखने में एकदम प्रेशर में घूमने में इधर काफी सिस्टम बढ़िया है।

पता नहीं ये साले कैसे खा लेते है? हमारा तो मन भी नहीं करता है खाने का कम ही लोग होते हैं जो खाते है मच्छियों को।

देखने में काफी मजेदार प्लेस है और देखने में एकदम एन्जॉय के साथ घूमने भी सकते हो और यहाँ पर पीने भी आ सकते हो कपल्स के साथ |

जो कुर्सी है कुर्सी पर आठ-दस लोग बैठिए आराम से एंजॉय कीजिए खेलिए कूदिए और कुछ भी कर सकते है आप उनको उठा के ले जाइए उठा के अपने घर में लगाइये छत के ऊपर।

तालाब है तालाब के बगल में एक किनारा है| किनारा है ब्राउन कलर का पानी है ब्लेक कलर का और ऊपर बादल दिख रहे हैं| बादल काफी अच्छे हैं और ब्लू कलर का पानी है| अच्छे से नहाओ यहाँ पे एनजोये करो और एनजोये के साथ घूमो कपल के साथ नहाओ और कुछ भी करो।

यहाँ पर काफी लोग आएंगे और इसका जो मैटी का कलर है वो रेड कलर का है और ऊपर है वाइट एंड काफी सारी लाइट लगी हुई है काफी अच्छा देखने में प्लेस है यहाँ पर लोग लोग सब टह --

जंगल है जंगल में काफी सारे पेड़ हैं और पानी दिख रहा है| पानी के पीछे एक बाउंड्री सी दिख रही है| वहाँ पर वाइट कलर का कुछ दिख रहा है और रेड कलर के बादल दिख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे काफी अच्छा प्लेस है।

यहाँ पर लोग घूमने आते हैं और काफी अच्छी जगह है और देखने में एकदम आलीशान जगह है| यहाँ पर नाइट में हनीमून भी मनाने आ सकते हैं और काफी अच्छा प्लेस है एकदम मस्त जगह है यहाँ पर छुट्टियाँ होती हैं।